यहाँ हमें एक लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमने एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत से फ्लोर्स बने हुए हैं और यहाँ पे --

पेड़ो से ढ़का दिखाई दे रहा है जो की दिखने में बहुत ही --

यहाँ हमें एक गार्डन एरिया दिख रहा है जहाँ एक वाटर फाउंटेन बना हुआ है जिसका पानी देखने में बहुत ही सुंदर और कलरफुल दिख रहा है यहाँ बहुत से लोग आए नजर आ रहे हैं यहाँ बहुत से आदमी औरत बच्चे घूमते दिखाई दे रहे हैं यहाँ हमें एक --

बच्ची परी के ड्रेस में नजर आ रही है।

और आजू-बाजू पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

बहोत ही सुंदर नज़र आ रहा है। होटल को --

यहां हमें एक घर का बगीचा नजर आ रहा है जहां --

यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ग्राउंड नजर आ रहा है जो की देखने में एक क्रिके क्रिकेट का ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसे पुरी तरह --

जो की एक सफेद कलर की ट्रक नजर आ रही है और यहाँ रोड के किनारे हमें --

जिम दिखाई दे रहा है। यहाँ एक जिम का दुकान दिखाई दे रहा है जहाँ एक्सेसाइज की बहोत महँगी और बड़ी- बड़ी --

दुकान बनी हुई है जो कि लड़कों का कटिंग दुकान है जहाँ --

फूल लगाए दिखाई दे रहे हैं य --

यहाँ पे हमें एक घर का काम होते दिखाई दे रहा है।

नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ आते-जाते दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें एक मैत्री गार्डन दिखाई दे रहा है।